स्क्रिप्ट्स एंड फंक्शंस विथ सिलाब के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
सिलाब में फाइल प्रारूपों के एक संक्षिप्त परिचय के साथ आरम्भ करते हैं
जब कई कमांड्स निष्पादित की जानी होती हैं तो इन स्टेटमेंट्स को सिलाब एडिटर के साथ एक फाइल में लिखना अधिक सुविधाजनक हो सकता है
इन्हें स्क्रिप्ट फाइलें कहा जाता है
ऐसी ही एक स्क्रिप्ट फाइल में लिखे कमांड्स को निष्पादित करने के लिए स्क्रिप्ट फाइल के नाम के बाद एक्सेक फंक्शन का प्रयोग किया जा सकता है
सामान्यतः इन फाइलों का एक्सटेंशन इनकी सामग्री के आधार पर sce या sci होता है
sci एक्सटेंशन वाली फाइलों में सिलाब फंक्शन या यूजर डिफाइंड फंक्शन्स शामिल होते हैं इन फाइलों को निष्पादित करना सिलाब एनवायर्नमेंट में फंक्शनों को लोड करता है किन्तु उन्हें निष्पादित नहीं करता है जबकि sce एक्सटेंशन वाली फाइलों में सिलाब फंक्शन तथा यूजर डिफाइंड फंक्शन्स शामिल होते हैं
कृपया याद रखें कि sce एंड sci के रूप में एक्सटेंशन के नामकरण की परंपरा नियम नहीं हैं अपितु सिलाब समुदाय द्वारा पालन की जाने वाली एक परंपरा है
कंप्यूटर पर सिलाब कंसोल विंडो खोलते हैं
कमांड प्रॉम्प्ट पर कमांड पीडबल्यूडी टाइप करने के द्वारा करंट वर्किंग डायरेक्टरी की जांच करें सिलाब कंसोल विंडो के टास्क बार पर जाएँ तथा सिलाब एडिटर को खोलने के लिए एडिटर विकल्प पर क्लिक करें मैंने पहले ही एक फाइल में कमांड्स टाइप कर ली हैं तथा इसे helloworldसीई के नाम से सेव कर लिया है इसलिए मैं ओपन आ फाइल शॉर्टकट आईकन का प्रयोग करके उस फाइल को खोलूंगा
helloworldसीई फाइल को सेलेक्ट करें तथा ओपन पर क्लिक करें आप नयी फाइल में कमांड्स टाइप कर सकते हैं तथा इस फाइल को फाइल मेन्यू के माध्यम से helloworldसीई के रूप में करंट वर्किंग डायरेक्टरी में सेव कर सकते हैं
सिलाब एडिटर के मेन्यू बार पर एक्जीक्यूट बटन पर जाएँ तथा लोड इंटो सिलाब विकल्प को सेलेक्ट करें
यह फाइल को सिलाब कंसोल में लोड करेगा
कंसोल में फाइल लोड करने के बाद स्क्रिप्ट आउटपुट प्रदर्शित करती है जैसा कि आप देख सकते है इसमें कमांड्स तथा संबंधित कमांड्स के लिए प्राप्त आउटपुट दोनों शामिल होते हैं
अब आ की वैल्यू को बदलकर 1 करें
एडिटर में फाइल मेन्यू पर जाएँ तथा सेव पर क्लिक करें हम एक्सेक कमांड का प्रयोग करके स्क्रिप्ट को सीधे सिलाब इंटरप्रिटर से भी निष्पादित कर सकते हैं तथा स्क्रिप्ट फाइल के लिए मार्ग प्रदान करते हैं जैसे एक्सेक ब्रैकेट्स में आई डबल कोट्स में helloworldसीई जो फ़ाइल का नाम है और एंटर दबाएँ स्क्रिप्ट फाइल एक्सेक फंक्शन के प्रयोग के साथ समान आउटपुट प्रदान करती है
अब फंक्शन्स के बारे में बात करते हैं फंक्शन्स की परिभाषा की वर्ड फंक्शन से शुरू होती है तथा की वर्ड इंड फंक्शन पर समाप्त होती है
मैंने पहले ही सिलाब एडिटर का प्रयोग करके functionसीआई में एक फंक्शन फाइल सेव कर ली है
मैं वह फाइल खोलूँगा जैसा कि आपने देखा कि फंक्शन यहां परिभाषित किया गया है
इसमें डिग्रीज़ आउटपुट पैरामीटर हैं और रेडियन इनपुट पैरामीटर है radians2डिग्रीस नामक फंक्शन्स के लिए
मैं एक्जीक्यूट मेन्यू विकल्प का प्रयोग करके इस फंक्शन को सिलाब में लोड करूँगा
फंक्शन अब सिलाब कंसोल में लोड हो गया है
इसे एक्सेक कमांड का प्रयोग करके भी लोड किया जा सकता है
एक बार फंक्शन के लोड हो जाने पर उस फंक्शन में विशेष आर्ग्युमेंट पास करके इसे किसी भी अन्य सिलाब फंक्शन की तरह कहा जा सकता है
परसेंट चिन्ह का एक मेंटल नोट बनायें तथा इसके प्रयोग का कारण याद करें
अब हम160pi2 के radians2डिग्रीस और पी4 के radians2डिग्रीस के लिए मान निकालते हैं
परसेंट पी2 पी2 एवं radians2डिग्रीस परसेंट पी बाय 4 पी4 अब हम एक से अधिक इनपुट और आउटपुट आर्ग्युमेंट वाला एक फंक्शन देखेंगे
यह फंक्शन इनपुट आर्ग्युमेंट के रूप में पोलर कोऑर्डिनेट्स लेता है तथा आउटपुट आर्ग्युमेंट के रूप में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स देता है
मैं वह फाइल खोलूँगा जिसे मैंने पहले ही टाइप कर लिया है यहाँ आप देख सकते हैं कि फंक्शन polar2रेक्ट के लिए एक्स और य आउटपुट पैरामीटर हैं तथा र और थेटा इनपुट पैरामीटर हैं
मैं एक्सेक विकल्प का प्रयोग करके इस फंक्शन को सिलाब में लोड करूँगा एक बार फंक्शन लोड हो जाने पर हमें फंक्शन को कॉल करने की आवश्यकता होती है
इस फंक्शन को दो इनपुट आर्ग्युमेंट एवं दो आउटपुट आर्ग्युमेंट की आवश्यकता होती है

इसे करते हुए कृपया याद रखें कि डिफ़ॉल्ट रूप से एक फंक्शन में परिभाषित किए गए सभी वैरिएबल लोकल होते हैं और एक विशेष फंक्शन में प्रयुक्त इन वैरिएबल्स का स्कोप फंक्शन परिभाषा के इंड फंक्शन की वर्ड के साथ समाप्त होता है
इस विशेषता का लाभ यह है कि हम विभिन्न फंक्शन्स में एक ही वैरिएबल नामों का प्रयोग कर सकते हैं
ये वैरिएबल्स तब तक मिश्रित नहीं होंगें जब तक हम ग्लोबल विकल्प का प्रयोग नहीं करते
ग्लोबल वैरिएबल्स के बारे में और अधिक जानने के लिए हेल्प ग्लोबल टाइप करें कृपया ध्यान दें कि यदि एक फंक्शन के अंदर किसी भी वैरिएबल को देखा या निरीक्षण किया जा रहा है तो डिस्प की आवश्यकता होती है एक फंक्शन फाइल के अंदर आप स्वयं के लिए एक स्टेटमेंट के अंत में सेमीकॉलन लगाने के प्रभाव की जांच कर सकते हैं इसे डिस्प स्टेटमेंट के लिए भी चेक करें
इनलाइन फंक्शन्स फंक्शन कोड के सेगमेंट होते हैं जिनमें लोकल वैरिएबल्स के साथ साथ सुपरिभाषित इनपुट एवं आउटपुट होता है
एक फंक्शन को परिभाषित करने का सबसे आसान तरीका deff कमांड का उपयोग करना है सिलाब in लाइन फंक्शन बनाने की अनुमति देता है तथा विशेष रूप से तब उपयोगी होता है जब फंक्शन की बॉडी छोटी होती है इसे deff फंक्शन की मदद से किया जा सकता है
यह दो स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है पहली स्ट्रिंग फंक्शन के इंटरफेस को परिभाषित करती है तथा दूसरी स्ट्रिंग फंक्शन के स्टेटमेंट्स को परिभाषित करती है
डेफ कमांड सिलाब में फंक्शन को परिभाषित करता है और इसे लोड भी करता है
स्पष्टतया एक्जीक्यूट मेन्यू विकल्प द्वारा डेफ कमांड का प्रयोग करके परिभाषित किए गए फंक्शन को लोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है
इस अवधारणा की व्याख्या करने के लिए हम एक उदाहरण देखते हैं मैं inlineसीआई नामक एक फाइल खोलूँगा जहाँ मैंने इनलाइन फंक्शन लिखा है मैं एडिटर विंडो को रिसाइज़ करूंगा
जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि पहली स्ट्रिंग फंक्शन डिक्लैरेशन को परिभाषित करती है तथा दूसरी स्ट्रिंग फंक्शन के स्टेटमेंट्स को परिभाषित करती है
हम इस फंक्शन को सिलाब एडिटर में लोड करेंगे तथा 90 के degrees2रेडियन्स और 45 के degrees2रेडियन्स मान निकालने में इसका प्रयोग करेंगे

एक फंक्शन न केवल अपने आतंरिक अन्य फंक्शनों को बल्कि स्वयं को भी कॉल कर सकता है
यह फंक्शन की रिकर्सिव कालिंग है
उदाहरण के लिए एक इंटीजर के फ़ैक्टोरियल की गणना करने के लिए एक फंक्शन लिखते समय इसकी आवश्यकता होती है
आइये सिलाब में फाइल प्रारूपों पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है कि सिलाब में दो प्रकार के फाइल प्रारूपों सीई फ़ाइल प्रारूप तथा सीआई फ़ाइल प्रारूप का प्रयोग किया जाता है
sce फाइल एक्सटेंशन वाली फाइलें स्क्रिप्ट फाइलें हैं जिनमें वे सिलाब कमांड्स शामिल होती है जिन्हें आप एक इंटरैक्टिव प्रकार के सिलाब सेशन के दौरान प्रविष्ट करते हैं
उनमें फंक्शन को लिखने में प्रयोग की गयी कमेंट्स लाइनें भी शामिल हो सकती हैं तथा वे स्क्रिप्ट को एक्जीक्यूट करने के लिए एक्सेक कमांड का प्रयोग भी कर सकते हैं
sci फाइल एक्सटेंशन वाली फाइलें फंक्शन फाइलें होती हैं जो फंक्शन स्टेटमेंट के साथ शुरू होती हैं
एक अकेली sci फाइल में कई फंक्शन परिभाषायें हो सकती हैं जिनमें बहुत से सिलाब स्टेटमेंट शामिल होते हैं जो फंक्शन आर्ग्युमेंट पर या आउटपुट वैरिएबल पर संक्रियाएं करते हैं जिसके बाद उनका मूल्यांकन किया जाता है
यह हमें सिलाब में स्क्रिप्ट्स एंड फंक्शंस के स्पोकन ट्यूटोरियल की समाप्ति पर लाता है
सिलाब में कई अन्य फंक्शन हैं जिन्हें अन्य स्पोकन ट्यूटोरियल में शामिल किया जाएगा
सिलाब लिंक्स देखते रहें
यह स्पोकन ट्यूटोरियल फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन साइंस एंड इंजीनियरिंग एजुकेशन द्वारा बनाया गया है
फॉसी प्रोजेक्ट पर अधिक जानकारी httpfosseein या httpscilabin से प्राप्त की जा सकती है भारत सरकार के एमएचआरडी आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन द्वारा समर्थित
अधिक जानकारी के लिए httpspoken tutorialorgNMEICT Intro पर जाएँ आईआईटी बॉम्बे से मैं यश वोरा आपसे विदा लेता हूँ
हमारे साथ जुड़ने के लिये धन्यवाद
अलविदा